बीच में एक आदमी पाठ पढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है।

साइड में एक एलमारी लगी हुई दिखाई दे रही है।

सामने एक दुकान है जिसका बोर्ड द बाइक ब्रदर के नाम से उप्पर लगा हुआ है।

पीछे की तरफ बड़ी बड़ी बच्चों की खेलने वाली बाइकें लगी हैं।

सामने अलगनी पर कुछ कपड़े टंगे दिखाई दे रहे हैं।

बाहर की तरफ रोड पर एक कार खड़ी है।

कोने कोने में खंभे हैं जिस पर लाइटें लगी दिखाई दे रही हैं।

ऊपर की तरफ एक झूमर लटका हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने कुर्सियां रखी है जिस पर दो लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं।

जिसके खंभे काले हो गए हैं।

पर वाल पंखे लगे दिखाई दे रहे हैं।

नदी के किनारे में साइड में एक वृक्ष बना हुआ है।

एक बड़ा सा पोस्टर भी लगा हुआ है।

बहुत सारे टेंट पेंट और पर्दे गुब्बारे लगे हुए हैं।

पीछे की तरफ बहोत सारे फूल लगे हुए हैं।

एक आदमी ऑरेंज कलर के कुर्ते में खड़ा है।

अंदर की तरफ दोनों तरफ शटर है।

जमीन पर घास उगी दिखाई दे रही है।

इसमें साइड में पेड़ लगे हुए हैं।